इस होटल का नाम --

लाल कलर का है और बाहर दो मूर्ति --

यह एक दुकान है। इस दुकान का नाम ताजा बुक स्टाल है।

फ़ोन से बात कर रहा है और उसके पास बोतल बैग्स भी रखा हुआ है।

यह एक नन मंदिर है। मंदिर के सामने एक घर है। उ --

यहां पर टेन्ट लगा हुआ है। टेन्ट का कलर सफेद और गुलाबी है।

और वहाँ से तार गया हुआ है ऊपर भी ए.सी. लगा हुआ है।

और रजिस्टर पर हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है।

और पास में आस-पास बहुत सारे पेड़ हैं।

यह एक मन्दिर है। इस मन्दिर में मूर्ति रखी हुई है वो भी चांदी की है।

इसके गुम्बद भी बहुत खुबसूरत हैं । मस्जिद में जाने के लिए मेन गेट लगा हुआ है । ये भी बहुत ही खुबसूरत है ।

और कछुए के ऊपर उसका कवर भी है।